और राजस्थान पुलिस की तैयारी करवाई जाती है।

दी गई तस्वीर एक केमिस्ट्री लैब की है।

दिए गए तस्वीर में एक आदमी करघे से धागा काट रहा है।

यहां पे बहुत सारे लोग दरगाहस के अंदर जा रहे हैं।

रेलवे स्टेशन के ऊपर आने जाने के लिए--

दिखाई दे रहे हैं सामने दो कुर्सियां और एक बड़ा सा कांच लगाया गया है।

लाइसेंस बनाने के लिए भी आर_टी_ओ ऑफिस जाया जाता है।

और उनकी वॉशिंग की जाती है।

बिल्डिंग को नीले और पीले रंग से बनाया गया है।

बहुत सारे मशीनें रखी गई हैं पुशअप लगने के लिए डम्बल और --

गवर्नमेंट सेंटर कार्डियोलॉजी साइंस और रिसर्च की है यह --

जे_सी_बी मशीन से गड्ढा खोद रहे हैं और मलबा निकल रहे है।

यहां पे बहुत सुंदर सुंदर फूलों के पौधे लगाए हुए हैं।